एक लड़का खड़ा है पीछे एक दुकान है यहां पर बहुत सारे फोक्के लगे हुए हैं।

और यहां पर दो-तीन आदमी दिख रहे हैं।

इस फोटो में कई सारे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं।

ये सभी लड़के हरे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहने खड़े हैं।

कई सारे लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं।

हरी बहरी फसल लगी हुई है।

इस फोटो में एक पलंग दिख रहा है और बगल में--

कई सारी कुर्सियां और टेबल रखी हुई हैं उधर पर एक फ्रिज --

और ऊपर नीले कलर की शर्ट पहने बैठे हुए हैं और पीछे वाले अंकल हरे कलर का टॉल और सफेद कलर की शर्ट पहने बैठे हुए हैं।

इस फोटो में एक आदमी--

और आदमी ने ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई है।

और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

और उधर पर कई सारे पेड़ और घर भी दिख रहे हैं।

और कई सारी गाड़ियां भी दिख रही हैं।

टी-शर्ट पहने और नीले कलर का मार्क्स लगाए खड़े हुए--

हरे कलर की कुछ चीज रखी हुई है और यहां पे--

इस फोटो में दो डॉक्टर दिख रहे हैं।

और इधर पर एक खम्मा लगा हुआ है।

और कई सारी गाड़ियां भी खड़ी हुई--

और इधर पर पीले और काले कलर की लकड़ियां लगी हुई हैं।

और छोटे-छोटी घास भी लगी हुई है उधर पर एक बोर्ड लगा हुआ है और उधर पर एक छोटा सा घर दिख रहा है।

और कई सारी बिल्डिंग दिख रही हैं और--

दो लड़के दो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं।